कलर का कपड़ा पहने हुए हैं एक व्यक्ति पीछे खड़ा है जो अलग कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

सामने एक कांच का दरवाजा अ विंडो लगाया गया है।

अह मोबाइल का दुकान है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी रखा गया है।

एक बैनर भी लगाया गया है।

इस पिक्चर पे कोई ऑपरेटर स्टेज बना हुआ है एक--

यह स्कूल या ऑफिस है जहां पे बहुत बड़ा है कि लोहा का ग्रिल लगा हुआ है ग्रिल के सामने--

ऑफिस का रूम बना हुआ है सामने एक दरवाजा है जो शीशे का है।

इसे उड़िया में लीचू लाइट बोलते हैं अ बगल पे बहुत सारे झाड़ हैं।

वो दो तीन टेबलें भी है और बहोत सारे गारमेंट दिखाई दे रा है।

इस पिक्चर पे बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं औरतें भी बैठे हैं बहोत सारे चार भी हैं और पीछे बिल्डिंगे हैं।

बहोत सारे सजावटो के साथ रखा गया है पीले और लाल गुब्बारों के साथ दो टेबल के ऊपर दो सिस्टम है।

सर ये अंदर चेयर भी पड़े हुए हैं पीछे म एक भगवान जी का फोटो भी है।

ग्राउंड भी है। जहां पे नेट वगैराह लगाया गया हैं।

नीला अ पीछे आसमान दिखाई दे रहा है जो बदलो से है और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

नाली गया हुआ है पानी का और नाली के बगल पे दूर दूर तक जो है बिल्डिंग के नजर आ रही है।

चार साड़ी रखा गया है और जो ब्लू कलर का अह ऑरेंज कलर का।

एक मशीन भी खोला गया है सामने एक वाइज भी है बहुत सारे --

और दीवारक में एक भगवान जी का स्टांड है।

एक औरत जो है छुपके कुछ निकाल रही है।

एक पे एक स्टेज बनाया गया है।

जो इंग्लिश में फ्रेशर्स लिखा गया--

एक बच्चा जो है खड़ा है जो खिलौने पे वो खेलने वाले है वो बहोत सारे रंगों से बनाया गया है लाल --

और इस वाइट कलर का कंटेनर भी राइट साइड में रखा गया है एक टावर भी--

इस पिक्चर पे एक महाकाल फिटनेस जिम ओपन हुआ है।

और बगल पे एक घर भी हैं जो बहोत सारे गाड़ियां खड़े है।

पर्दा भी पीछे टंगा है आरती से फूलों से आरती सजाया गया है।

यह तस्वीर पे दो व्यक्ति हैं।

वहां पे बहुत सारे व्यक्ति जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं।